यह एक बहुत ही सुन्दर पार्क है जिसमें हरियाली भरपूर है।

यह एक गैलरी है जो एक मकान की है।

जिसे एक लड़का लगा रहा है।

यह नीले रंग की एक बैटरी वाला ऑटो है।

यह एक काले रंग का बैटरी वाला ऑटो है।

यह उसके पीछे से एक फ़ोटो लिया गया है।

यहाँ एक मैथ क्लासिस है जो बहोत छोटी है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है।